यहां पर हमें ब्लू दिख रहा है।

सामने एक हमें दिख रहा है इंडिया बैंक ।

यहां पर बोहोत सारी वेजिटेबल दिख रही है।

जिसका कलर ब्लू दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है।

कुछ ब्लैक कलर की टंकियां दिखाई दे रही है।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

सामने ही हमे एक डूर दिख रहा है।

यहां पर दिख रहा हैं ऊपर की ओर--

कुछ यहां पर हमें दिखाई दे रहे है पीछे की ओर--

सामने दीवार दिख रही है जिसका कलर --

और साथ में ब्लैक कलर का टी_वी दिखाई दे रहा है और हमें दिख रहा है पीछे की ओर पर्दा।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

और साथ में पुलिस की एक गाड़ी--

टॉप्स लिखा हुआ दिख रहा है बेड पे --

और व्हाइट कलर की टाइल्स है।

एक व्यक्ति यहां पर ब्लैक कलर की ड्रेस में दिखाई दे रहा है।

भुट्टे का कलर आगे से हल्का सा रेड --

यहाँ पे बहोत सारी बुक्स दिख रही हैं।

बोट का कलर है यहां पर--

और हमें कुछ यहां पर पीछे की ओर व्हाइट कलर की दीवारें भी दिख रही हैं साथ में--